ये फोटो में जो एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसका ऊपर में बहुत सारा पेड़ लोग लगके हैं और नीचे में पानी भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में दो बड़ा बड़ा मशीन दिखाई दे रहा है।

एक साइड में डिजाइनर कपड़ा लोग भी रखा हुआ है फ्लोर का कलर व्हाइट है।

घड़ी भी एक थू दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर से कुछ यहां में टेबल जैसा।

यहां में बहुत सारा बैलून और रिबन से डेकोरेशन किया गया है।

और ब्लैक कलर से टीना से क्या क्या बना के भी है लोहा का--

ये फोटो में एक शादी फंक्शन का रास्ता दिखाई दे रहा है।

नीचे में वाइट कलर का टाइल्स लगा के है।

और खाने का सामान रखा हुआ है।

और सामने में सब्जी ना मेला भी दिखाई दे रहा है।

इंसान का हाथ आधा दिखाई दे रहा है फोन पड़क के--

और ऊपर में तीन फैन दिखाई दे रहा है।

और दीवार भी दिखाई दे रहा है और ऊपर में वायर लोग भी दिखाई दे रहा है।

और एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और साइड साइड में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

बाहर में जो व्हीलचेयर जैसा रखे हैं और बहोत सारा सामान रखने का मशीन रखा हुआ है।

यह फोटो में बड़ा सा स्पीकर दिखाई दे रहा है।

स्पीकर का ऊपर में लाइट भी है और बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है गाड़ी लोग में।

इस फोटो में ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जहां में इंसान लोग लाईन बना रहा है पैसा निकालने--

लीची को एक स्टील का थाली में रखा हुआ है।

उसका साइड साइड में बहुत बड़ा बड़ा गछी दिखाई दे रहा है।

और एक व्हाइट कलर का चर्च दिखाई दे रहा है जिसका ऊपर में एक क्रॉस भी बना के है।

ये फोटो में एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जहां में बहुत सारा अलग अलग भगवान का मूर्ति बना के है।

ये फोटो में एक फ्लड आया हुआ जगह दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारा पानी है और यहाँ मे एक बस खड़ा होके है और गाड़ी भी डूब के हैं।

साइड में एक बड़ा सा घर जैसा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहा मे चेयर लोग भी दिख रहा है।

इ फोतो में बहुत बरा बरा बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

साइड में एक ब्लैक कलर का चेयर और एक ठो तख्ता का चेयर रखा हुआ है।

ये फोटो में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है जो माइक पे गाना गा रहा है।

सामने में टेबल का ऊपर फूल भी दिखाई दे रहा है।